यह एक बहुत बड़ा फील्ड है फील फील्ड के आगू में घर द्वार है घर द्वार व्हाइट कलर का है।

गिलास है इसमें बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

इसमे एक स्टेज लगा हुआ है स्टेज पर एक आदमी और दो--

यह एक बहोत बड़ा हॉल है जिस हॉल में महजिद है महजिद व्हाइट कलर और पीले कलर का है इसमें बहोत सारे लोग हैं।

टेबुल है कुर्सी है बहोत सारे खाने का व्यवस्था है।

यह एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है इस ग्राउंड में बहुत सारा बहुत घर है।

यह एक बहुत ही बड़ा पहाड़ में से पानी गिर रहा है बहुत सारे --

और बहोत सारे घर है बहोत सारे पेड़ पौधे है पोल है तार है।

सोफा और टेबल कुर्सी और बहुत सारे पाइप हैं यह ग्रीन कलर का है और बहुत सारे पेड़ पौधा भी है।

खिड़की है बहोत सारे पंखे हैं और बहोत सारे--

यह एक अंगना है जिस अंगने में बहुत सारे मुर्गियाँ है और बहुत सारे पेर भी हैं।

बहोत बहोत ज्यादा कपड़ा भी है और साइड से घर भी है।

यह एक बहोत ही बड़ा हाल है। इस हॉल में एक दुकान है। दुकान व्हाइट और लाल कलर का है।

जो गाड़ी से खूना रहा है इसके अगल-बगल बहुत सारे पेर भी हैं बहुत सारे लोग भी हैं।

यह एक रोड है जिस रोड पर दो भैसे दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लोग हैं बहोत सारे बिल्डिंगें हैं।

बहोत सारे मोबाइल और चारजर उरजर ओफर उफर मिलता है और ये दोकान व्हाइट कलर का है इसमें हेडफोन भी मिलता है।

यह एक दुकान है इसका नाम प्रगति बुक सेंटर है और इसका बोड ब्लू कलर का है इसमें बहोत सारे बुक मिलते है।

और ये इसके ऊपर बहोत सारे--

और बादल है आसमान है बहुत सारे तार लगे हुए हैं।